जो कि बोर्ड लगा हुआ है रेड कलर का --

इस इमेज में हमें एक जो है शॉप दिख रही है जो मालवाअल मोइन परफ्यूम नाम से है अंदर जो है परफ्यूम की छोटी-छोटी बोतलें रखी हुई हैं।

बाहर एक कर खड़ी हुई है कुछ एक्टिवा खड़ी हुई हैं बाहर बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

इस इमेज में हमें जो है रेस्टोरेंट दिख रहे हैं कुछ लोग रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हुए हैं बाहर जो है टेबल कुर्सियां लगी हुई हैं।

डार्क कलर का पिंक लहंगा पहना हुआ है।

और ऊपर जो छत पे हैं।

इस इमेज में हमें एक मंदिर दिख रहा है मंदिर के बाहर एक आदमी बैठा हुआ है मंदिर फ्लावर से डेकोरेट है।

आसमान दिख रहा है पेड़ दिख रहे हैं।

इस इमेज में हमें एक जो है रेल दिख रही है पटरियां दिख रही हैं आसमान दिख रहा है।

जो है एक लकड़ी की बोट खड़ी हुई है आसमान दिख रहा है।

इस इमेज में हमें रोड दिख रहा है रोड पर बड़ी सी बस खड़ी है ब्लैक वाइट कलर की --

और जे _सी_बी गट्टा खोद रही है आसपास पेड़ दिख रहे हैं।

पेट्रोल पंप में कुछ लोग खड़े हुए हैं कुछ लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं एक्टिवा खड़ी है कार खड़ी है ऑटो खड़े हुए हैं।